यहां एक एग्जिट का और एक एंट्री का दर--

होटल सूरज पैलेस लिखा हुआ है।

और यहां कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे है।

बहुत सारी बुके रखें दिखाई दे रही हैं।

इन कबड के ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं एक कबड पे सेतीस नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और घर के बाजू में एक गुलाबी कलर का पेंट लगा भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जिस पे कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

तिरंगा भी लगा दिखाई दे रहा है।

लाल कलर के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

सामान रखने की अलवारी दिखाई दे रही है।

इस मैदान के बाजू में एक जंगल भी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

जो कि हरे रंग से लिखा हुआ है।

इस घर के बाजू में एक कुर्सी भी लगी हुई है जो हरे कलर की है।

यह एक दीवार दिखाई दे रही है।

पुतले भी बने हुए दिखाई दे रहे है।

और गाड़ी में खड़ी दिखाई दे रही हैं।

एक दुकान दिखाई दे रही है।

बोर्ड लाइब्रेरी लिखा हुआ है।

यह एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

और ये पानी बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

गार्डन में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कलर-कलर वाली साड़ी भीपहनी हुई है।

यह एक गेम दिखाई दे रहा है।

और कुछ चिकन के मसाले रखे हुए हैं।

ये सिक्कों का मंदिर दिखाई दे रहा है।